जहाँ पर एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठकर कुछ रजिस्टर पर वो अपना लिख रहे हैं।

इस पिक्चर में हमे एक मार्केट दिखाई दे रहा है जिसके मार्केट में बहुत सारे आदमी है बाइक है ।

पिक्चर मे हमे गौतम बुद्ध का जो है प्रतिमा ऊपर ऊपर गोल्डन कलर का और नीचे एक दिवार है वो व्हाइट कलर का है वहां एक लड़का --

अगर नीचे बहुत बड़ा लम्बाई भी उसका काफी है ।

पेड़-पौधे का मतलब हरा कलर है। ग्राउंड में हरी-भरी कहीं-कहीं घास भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बहुत सारे आदमी है और बगल में पेड़-पौधे आगे में एक ग्राउंड भी है मैदान भी --

ये एक छत जो है मतलब की छत बनेगा उसका जो है सेंट्रिंग हुआ है जो लेबर सब है वो सेंट्रिंग कर रहे है कुछ लेबर सब --

और उसके आगे में जो है एक मैदान भी है। पीछे एक बिल्डिंग भी है उसके बगल में और एक सीढ़ी भी है बना हुआ।